कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है और वहां पे कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

दिखाई दे रही है और एक बोर्ड लगा हु नजर आ रहा है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

और वहां पे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं बच्चों ने लाल और नीले रंग की ड्रेस पेहनी रखी है और ग्राउंड में घास भी नजर आ रहा है।

मुझे एक दीवार नजर आ रही है जोकि लाला रंग की है वहां पर लगा हुआ है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है दरवाजे के पास खड़ा जिसने की लाल रंग के कपड़े पहने हैं।

एक ऑफिस नजर आ रहा है ऑफिस में एक टेबल नजर आ रहा है उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स पड़ी हुई नजर आ रही है एक गमला पड़ा हुआ नजर आ रहा--